यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है दुकान के ऊपर ब्लैक कलर से डेकोरेट किया गया है सामने शटर जैसा कुछ हैं।

उसी से जस्ट साइड में हमें पानी जैसा दिखाई दे रहा है जिसे देख के लग रहा है कि ये कोई नदी या फिर--

और इसमें काफी सारे जो फ्लावर्स है वह टंगे हुए है आर्टिफिशियल फ्लावर शॉप है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ़ फ्लावर्स यहाँ पे--

दिए गए हैं काफी सारे फ्लावर्स यहाँ पे रेक्स में है कर्टेन्स में है बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर --

जो कुछ जो पैसे हैं वह काउंट कर रहै हैं पर्सन के साइड में कुछ केले दिखाई दे रहै हैं।

खुला हुआ है टिन सेट से बनी है शॉप है ऊपर एक बल्ब है और यह मैकेनिक शॉप है जो रिपेयरिंग का वर्क करते हैं।

जहां पे पर्सन अपना एक्सरसाइज और वर्कआउट कंप्लीट करते हैं।

बनाया गया है मूर्ति पर कलाकृतिया की गई है वो बहुत ही बारीकी से और सुंदरता से की गई है।

ऊपर भी नीला आसमान समुद्र भी नीला पानी देखकर ही बहोत ही सुंदर सा लग रहा है समुद्र के दूर--

कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है मन मस्जिद या मजार --

जस्ट यहाँ पे हमें सामने जो है जाली लगी हुई दिखाई दे रही है रेलिंग्स टाइप से जिसमें काफी सारे यहाँ पे --

पूल्स भी है यहाँ पे दूर हमे एक ट्रॉली दिखाई दे रही है पेट्रोल टैंक --

और काफी सारी यहाँ पर रेक्स हैं जिसमे डिफरेंट -डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स को--

क्रिकेट खेला जाता है बच्चों के लिए जैसे क्रिकेट के लिए तैयार किया गया ग्राउंड हो और हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

फ्रंट में हमें काफी सारी डमीज दिखाई दे रही है जिसमें--

ये सारी डमीज बॉयज की गर्ल्स की एंड --

एक दुकान के अंदर काफी सारे हमें जो है टॉयज दिखाई दे रहै हैं जिसमें बेबी टॉयज है बैग हैं।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

रेड कारपेट बिछा हुआ है फ्रंट मे एक माइक रखा हुआ है कुछ लोग हैं जो परफॉर्मेंस कर रहै हैं जो सेम ड्रेस कोड में है ब्लू कलर के--

यहाँ वो दिखाई दे रहे है कुछ केरी करते हुए सामने एक पर्सन है जो पिलर्स को पकड़े हुए हैं।

खड़े हुए हैं यहाँ पर कुछ हमें चारों दिखाई दे रहै हैं बुक शॉप दिखाई दे रही है।